यहां पर बाल दाड़ी लिखा हुआ है शायद यहां पर उम्म उम्म दाढ़िया काटी जाती है और यहां पर एक आदमी खड़ा है।

यहां पर बहोत सारी लड़कियां बैठी हुई है जो कुछ पेंटिंग कर रही हैं एक लेडीज खड़ी हुई है जिसने व्हाईट कलर की ड्रेस पेहनी हुई है और नीचे ब्लैक कलर की चप्पल डाली हुई हैं इनके पास कलर हैं।

और इनके पास सीटें हैं इन्होंने रंगे बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं पिछे दिवार है।

उस साइड में एक घड़ी है घड़ी में टाइम दिखाई दे रहा है कुछ कांच का बना हुआ है।

ऊपर से लाइट्स लग रही है जो की व्हाट्स कलर की है सामने ये लैपटॉप दिख रहा है एक स्टूल के ऊपर इसने पैंट कोट पहने हुए हैं और हाफ पैंट --

हां यहां पर एक पत्थर है जो कि नीले कलर नीले कलर का है नीचे कुछ हरे भरे मैदान है बहुत बड़ा मैदान है पीछे पहाड़ छोटे छोटे दिखाई दे रहे है ऊपर आसमान है।

और ऊपर कुछ हरी हरी पत्ते की बेल सी--

रोशनी लगी हुई है। लोग खड़े हुए हैं जो यहां से चल रहे हैं।

और साइड में दीवार पर एक तस्वीर टंगी हुई है जिसके ऊपर एक और तस्वीर है ऊपर पंखा लगा हुआ है। बेडशीट है जो सफेद रंग की है दो तकिए है जो --

तस्वीरों में कुछ चांदी कलर के चीजें रखी हुई है।

साथ में खेल रहे हैं कूद रहे हैं और ये--

इसमें उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है दीवारों पर कुछ बैनर्स से चार्ट्स लगे हुए हैं और फिर ये दो आदमी में खड़े जो कि काम कर रहे हैं जो की प्रिंट निकाल रहे हैं शायद बाहर एक गाड़ी है जिसका टायर काला है।

ऊपर गेट है गेट मे कुछ बैनर्स है और इसके साथ जो बिडिंग लगी हुई है।

इसमें जो पत्ते है वो हरे भरे हैं नीचे जो रोड है रोड पर पत्ते बिखरे हुए हैं।

यहां पर एक घर है ऊपर आसमान है जो कि नीले रंग का है बादल सफेद कलर के है बड़े बड़े देवदार के पेड़ है जो कि हरे भरे हैंभाई।